नीचे सफेद कलर के जूते पहना हुआ है।

उधरली साइड में व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और वाइट कलर का दीवार ऊपर हो रहा--

और इस पर पीले कलर का रंग हो रहा है।

यह एक कार्य लय जिसके बाहर ब गाड़ी बाइक ही बाइक खड़ी हुई --

यहां पर कुछ मार्केट नजर आ रही है।

और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है।

जिसने नेवी ब्लू कलर की पैंट नेवी ब्लू कलर हुड पहनी हुई है।

हैं जो कपड़े वगैरा उस पे टंगे हुए हैं और लाइट वगैरा लगे --

और जिसमें झिलमिल झिलमिल झिलमिल पानी की जो है धाराएं सी बहती नजर आ रही।

और कुछ पेड़ वैसे भी लगे हुए है हरे हरे--

और यहां पर उसके आगे टिन वगैरा पड़ी हुई है।

यहां पर जो है नए नए शोकेश ही शोकेश हैं।

यह एक जैन ज्वेलर्स की दुकान है।

और जैन ज्वेलर्स के नाम से बराबर में विकास पान--

यह किसी रेलवे स्टेशन का दृश्य सा दिखाई दे रहा है।

जिसपा उस पानी के अंदर एक बच्चा और एक व्यक्ति रेड कलर की--